किरकिरे और दन्त मंजन ब्रुश है और --

सुबह शाम करना चहिए बहुत अच्छे होता है इ करने से बहुत --

बजरंग बली का फोटो भी है यहाँ पे पूजा आरु किया जाता है।

बगल बगल बहुत सारे झाड़ियाँ हैं | यहाँ पे बहुत सारे पेड़ --

साइकिल लगा हुआ है और यह गाछ-वृक्ष --

सब यात्री है और बहुत-सा बस है यहाँ पे बस --

बस आउरु है यहाँ पे बहुत सारे यात्री बै --

चल यहाँ पे फरस क्या हुआ है और यहाँ पे बहुत --

सजाया जा रहा है झंडा फहराने के लिए बहुत सारे भारत --

है या नीचा मा फर्स और किया हुआ है यहाँ पे एक गेट --

एक आदमी जाल चढ़ रहा है यह दो-दो गो झोला है यहाँ पे --

दो आदमी या आ रहा है यहाँ पे ऐना भी ल अथी --

दो चार चक्का दो चार चक्का उस साइड भी होगा।

टीम में होता है ग्यारह अ खिलाड़ी एक टीम में | यहाँ पे हरियाली है बहुत --

बहुत अंगूर लगता है यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ --

पे पेंट ऊंट किया हुआ है बहुत --

ये चीज बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे बहुत रेंग पेंट --

खतरनाक होता है छोटे-छोटे जंतुओं को मारकर खा लेता है। यहाँ --

एक पेड़ है बहुत हरियाली लगता है | यहाँ पे एक पोस्टर लगा हु --

ये माज़ा बहुत सारी मिलती है यहाँ पे | एक डब्बा है यहाँ पे | एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पे।